और कुछ वाल्किंग कर रहें हैं।

और एक बगल में ग्राउंड हैं जिसमे बहोत सारे ऑटो लगें हुए हैं और बहोत सारे लोग भी दिख रहें हैं और दूर बहोत बड़े-बड़े ट्री भी हैं।